कोई उजला है कोई भूरा है और बकरी सब खाना खा रही।

और उसके आगे फुलबेति है गमला रखा हुआ है और काला रंग का टाइल्स लगा हुआ है उसके बाद छोटा गेट है और चारो तरफ से डिज़ाइन ही नहीं मनाया हुआ है ।

ये जिम है औ लड़का बॉडी दिखा रहा है और जीन्स पैंट पहने हुए है उजला-उजला जूता पहने हुए है लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए है --

ए लाइट भी लाइट भी लगा हुआ है और बिल्डिंग उजला कलर का बिल्डिंग है।

और आगे की और एक रेलिंग है नीचे प्लेट रखा हुआ है लड़की पीला कलर शर्ट और दुपट्टा रखे हुए है।

ई किराना का दुकान है और इसमे बहुत सा आइटम है और हॉर्लिक्स साबुन है एथो सा साबुन है बोर्नविटा है |